टंकी का कलर सीमेंट कलर का है।

चबूतरा के ऊपर करकट लगा हुआ है।

एक रेस्टोरेंट का दृश्य है इस रेस्टोरेंट की सीलिंग पे छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं।

यह एक शादी के ग्राउंड का दृश्य है।

कपड़ों का कलर ऑरेंज और वाइट है।

और मरीज चेयर पर लेटे हुए हैं।

इस दुकान के अलमारी पर बहुत सारे वस्तुएं रखे हुए हैं।

और हैप्पी बर्थडे का स्टीकर भी टंगा हुआ है।

दुकान के गेट कांच से बना हुआ है।

इस दुकान के टेबल पर एक बड़ा फ्लावर पॉट रखा हुआ है।

यह एक कमरे का दृश्य है।

घर का दीवार का कलर पीला है।

घर के बाहर छोटी छोटी फ्लावर पॉट रखें हुए हैं।

फूल पत्ती भी लगे हुए हैं।

दुकान में एक फ्रिज भी है।

मैदान में एक गाड़ी भी पार्क किया हुआ है।

एक फूलो के बगीचा का दृश्य है इस दृश्य में अनेक प्रकार के फूल रखे हुए है।

एक फूलों का दुकान का दृश्य है।

इस दुकान में एक सीढ़ी रखा हुआ है लकड़ी का ।

यह एक कमरे का दृश्य है इस कमरे की दीवार व्हाइट पुट्टी से किया गया है।

इस रेस्टोरेंट के काउंटर पर कुछ लोग खड़े हैं।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

कमरे के काउंटर पर एक व्यक्ति हैं।

घर का गेट का कलर आसमानी है।

इस घर के बगल में दुकान भी है।